रउवा लोगन इहा एकठो कार का गैरेज देख रहल बानी | ए गैरेज के भीतरे एगो सफ़ेद रंग का गाड़ी देख रहल बानी |

ये बिल्डिंग कोनो कॉलेज के प्रयोगशाला बा यहाँ दुठो बड़ा-बड़ा अलमारी रखल हअ।

हमका ऐसे बुझ तानी की ईमारत कोनो कॉलेज के बा | एकरा के बाहर गोल-गोल बना के बहुत सुन्दर --

देखल बा एगो नीला रंग का एगो पीला रंग का एगो लाल रंग का |

कलिंद्रा खरबूजा सब दिखाई दे रहल बानी ये देखे में बड़ा स्वादिष्ट बा।

रउआ लोगन ई फोटो में एगो बहुत बड़ा मॉल का फोटो देख रहल बानी | ये मॉल का डिज़ाइन बहुत ही सुन्दर बुझता |

जेके पियरिया रंग के बा अ गोल पोस्ट के पीछे लड़कन के बेग रखल ह।

एकरा के बाहर एगो पानी के जार रखल ह अ सामने एगो नीला रंग का टेबुल रखा है |

जेके देखरा में बड़ा सुंदर बा एकरे दोनों तरफ कटोरा रखल ह जेकरा में इनका खाना ह।

करिया से थोइका कम समझमे आला।

रउवा लोगन इ तस्वीर में एगो स्कूल देख रहल बानी ये स्कूल का दीवाल में बड़ा-बड़ा लोहा का खिड़की बनाया गया है।